एक ट्रैक्टर रखा गया है जो ब्लू कलर का है और यहाँ पर उसके टायर्स नजर आ रहे हैं और वही हरे पेड़ दिखाई दे रहा है ।

एक स्कूल का क्लासरूम दिखाई दे रहा है जहां पर काफी सारे बेंचेज दिखाई दे रहे हैं जो ग्रे कलर के हैं और वहाँ पर सामने में एक --